यूके बैंक लिखा है जिसको मालाओ सजा रखा बलून से सजा रखा--

ऑरेंज कलर की सामने ट्रेन सामने खड़ी है रात का टाइम है लाइट जली हुई है प्लेटफार्म पर --

लाइट जली हुई है दीवाल पर पुरे पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहै हैं।

सुन्दर से फ़ूलो की दुकान दिख रही है फ़्लावर पोट रखे है छॊटे -छॊटे बड़े -बड़े --

नाव को नाव के पास खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इनका सामान दिखाई दे रहा हैं।

ये रोड है रोड के दोनों तरफ बाऊंडरी दिख रही हैं।

एक खम्भा लगा हुआ है साइड में --